ऊम यह एक रोड है। यहां पे एक साइकल शौरी रिक्शा खड़ी हुई है।

घास भी उगी हुई है लेकिन कुछ सूखी हुई हैं यहां पे पेड़ पौधे भी हैं जो सुख भी रहे हैं और कुछ हरे भरे भी हैं।

यह कोई स्कूल है यहां पे बहुत सारी लड़कियाँ हैं लड़के डांस की प्रैक्टिस कर रहे हैं।

एंड इसमें डंबल्स काफी सारे डंबल्स भी रखे हुए हैं और ये वेट मशीन भी है औ--

और जॉगिंग मशीन्स भी है इसमें और भी काफी सारी मशीनें हैं।

यहां पे कुछ बच्चे योगा कर रहे हैं।

फैन भी है और भी समान है।

यहां पे काफी सारे लड़के खड़े हुए हैं और जो पीछे शायद कोई स्कूल या फिर कुछ बना हुआ है।

स्कूल का गेट खुला हुआ है यहां पे पुतला भी है जो पंजाबी कपड़े पहने हुए है।

यह कोई कपड़ों की दुकान है जिसमे लड़कों के कपड़े मिलते हैं औ--

परचून की दुकान है इस--